और ये बहोत ही बड़ा महल लग रहा है मुझे देखने में उसके नीचे ये एस.बी.आई ए.टी.एम है और उसके आगे केनारा बैंक है।

यह एक हाइवे की ही फोटो है क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग है।

इसमे थाने के बारे मे ग्राम-ग्राम के बारे मे पिता का नाम और यह इसमे बहुत सारी चीज लिखी हुई है।

और एक व्यक्ति जो है वह पिकप को जो है वॉश कर रही है और दो बस और एक मैजिक जो है लगी हुई है।